जिसमें बहुत सारे से खिड़कियां लगी हुई है।

जिसके नीचे काफी सारे लोग हैं।

और बिजली के तार भी लगे हुए हैं।

दो बच्चे भी खड़े हैं और एक आदमी खड़ा है।

में कुछ लड़के भी खड़े हैं।

और मिट्टी की जमीन पर ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

और बाहर भी बहोत सारी कारें खड़ी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा मंदिर है।

यह एक हरे रंग की मस्जिद है।

और लोहे का एक शेड भी डला हुआ है।

और कुछ लोग वहां पर मछलियों की खरीदारी कर रहे है ।

यह बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें हरे रंग का दरवाजा है।

इसके बीच में एक काउंटर लगा है।

ये बहुत बड़ा सा एक घर है।

और कुछ साइकिलें भी खड़ी हुई है।

और छोटे-छोटे से कैबिन बने हुए है ।

इमारत के बाहर कुछ आदमी भी है।

यहां पर एक बड़ा सारा महल बना है।

कुछ राखियां लटक रही हैं।

ये एक भारतीय डाक सेवा है।

यहां पर एक बड़े मैदान में छोटी-छोटी सी झोपड़ियां बनी है।

एक नीले रंग की लंबी सी पट्टी बिछी हुई है ।

ख़ूबसूरत से रंग बिरंगी फूल हैं मंच के ऊपर ऐ बड़ी सारी कुर्सी राखी है।

कुर्सी के पास में एक आदमी खड़ा हुआ है।

गमलों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक जिम की है।

उन्होंने गले में पीले रंग के पट्टियां बानी हुई है।

यहां पर एक बड़ा सारा घास का मैदान है।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बाहर भी एक दो बाइके खड़ी हुई है।